पीकर नजर आ रहे हैं और इसके ऊपर भी बहोत सारे पीकर नजर आ रहे हैं।

ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है इस पिक्चर में आप देख सकते है।

पिक्चर नजर आ रहा है एक एक किराना दुकान का--